उसी के बगल में एक और चम्मच नजर आ रहा है कांटे वाला।

इसके अंदर शीशे लगे हैं और लाइट भी लगी है।

ये एक बड़ा सा ऑफिस है जिसके अंदर गेट लगे हुए बहोत सारे।

और उसी के पीछे कुछ लटक रहा है जो पीला व्हाइट और रेड कलर है।

एक बैटरी रिक्शा भी रखा है बहुत सारी भीड़ है यहां पे।

एक सामने बाइक खड़ी हुई है उसी के ऊपर छतरी लगी हुई है।

कुछ गमले बगैर पेंट हुए भी रखे हैं।

अ कुछ कुशन्स भी रखे हैं छोटे बड़े सारे प्रकार के--

उसी के बगल में बी एक मकान दिख रहा है जिसमें व्हाइट कलर का ऊपर स्टील की रेलिंग लगी है। झंडा भी लगा ऑरेंज --

अ पत्थर भी छोटे वाले पड़े हुए हैं। मोरंग है औ आदमी भी हैं काफी। एक बु --

एक आदमी जमीन मे बिछाकर बैठा हुआ है कुछ कर रहा है।

और टेबल भी लगी हुई है यहां पे सोफा सेट एक बच्चा बैठा हुआ नजर आ रहा--

एक पेट्रोल टंकी दिख रही है पीली और नीली कलर की जिसमें पीले कलर से चार पिलर भी नजर आ रहे हैं।

जिस में पत्थर भी पड़े हुए हैं एक आदमी भी नजर आ रहा है सामने की ओर चलता हुआ।

और एक बाइक यहां पर नजर आ रही है एक गेट लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं पेड़ के पत्ते ले के नकली वाले।

सामने वल का सामान भी भरा हुआ नजर आ रहा है जो रैक के अंदर लगा हुआ है।

लाइट भी बाहर की ओर लटकती हुई नजर आ रही है।

पीछे की ओर गुल्लक टाइप में ब्लैक कलर का कुछ रखा है।

एक आदमी पीछे से झाग भी रहा है इस आदमी के।

इसके अंदर कई प्रकार के भगवान भी दिख रहे हैं एक भगवान नीचे वॉल बैठा हुआ भी है।

एक आदमी मास्क लगाए सामने खड़ा हुआ भी दिख रहा है।

एक स्कूटी भी खड़ी है जो सामने से दिख रही है ब्लैक कलर की।

पीछे की ओर एक मकान बना हुआ है जो वाइट कलर का है जिसमें लाइनिंग वाली लाल पट्टियां भी हैं।

जो सल्ट पहने हुए है चश्मा लगाए हुए है।

इसके अन्दर स्वीमिंगपूल नजर आ रहा हैं जो नीला पानी भरा हुआ है।

पैंपर्स भी सामने की ओर नजर आ रहा है।

और बहोत सारे बड़े बड़े भी पेड़ है पीछे की ओर।

इसके अंदर गोल प्रकार के पिलर बड़े खूबसूरत से बने हुए हैं।

पत्ते और घास यहां पे भी बहोत सारी है भरी हुई।

औ बड़े बड़े भी पत्ते हैं। पेड़ भी धवल राइट साइड पे है औ लोहे की ग्रिल भी दिख रही है।

हरे कलर से पेंट हुई है जमीन में पत्थर लगा--